नेस्कैफे का कप लिए हुए हाथ में खड़ा हैं।

उसके सामने कुछ भक्त गड़ उनके नीचे एक पंडाल पर खड़े हुए हैं।

जब जिस व्यक्ति को ए.टी.एम. के द्वारा पैसे निकाल सकता हैं।